एक तस्वीर तस्वीर जानवर नजर आ रहे हैं।

सब मैट पर बैठे हुए है।

यह देखने में बहोत ही सुंदर नजर आ रही हैं। यह गोभी खाना बनाने मे प्रयोग किया जाता है जोकि बहोत टेस्टी होती हैं।

यहाँ पर अच्छी-अच्छी मशीनें हैं मशीनें से हम अपना सेहत कम ज्यादा कर सकते हैं।

खाने में चावल दाल दो तरह की सब्जियाँ खीरा और प्याज भी रखा है।

हम कोई भी सामान खरीदे तो इससे पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत जल्दी पेमेंट हो जाता है।